यह एक मैरिज होम है इस मैंरिज होम में शादी तथा अन्य फंक्शन भी हम कर सकते है इस मैंरिज होम में कुछ चेयर तथा टेबल भी है ताकि लोग इन पर बैठ के खाना खा सके।

और यह दुकान काफी ज्यादा बड़ी भी है। यह होलसेल का काम भी करते हैं इनकी दुकान पर लिखा हुआ है होलसेल बुक --

ये एक समुन्द्र है जो काफी बड़े तरीके का है। यह समुन्द्र काफी ज्यादा गहराई से भी बना हुआ होता है। इसमें एक नाव् है जिस से हमे समुन्द्र का सफर करना हो तो हम --